पर्दे दिख रहें हैं सजावट दिख रही है --

बोर्ड लगा हुआ है देखिए मनीष बुक डी --

पेड़ पौधे दिख रहे हैं टीन शेड दिख रही बैनर --